जहां सामने ही एक आदमी खड़ा हुआ है बाइक के ऊपर बैठा है जो की पाइप दिखाई दे रहा है एक आदमी और दिखाई दे रहा है जिसके पैर दिख रहे हैं।

पटरी दिखाई दे रहा है बहुत सारे गिट्टी दिखाई दे रहा है डस्टबिन दिखाई दे रहा है कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ऑटो दिखाई दे रहा है एक बाइक दिखाई दे रहा है एक कार दिखाई दे रहा है एक कुर्सी बहुत सारी तार दिखाई दे रहा है एक टावर दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है।